यहां बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है देख सकते है --

दो तीन मशीने है और इसपे काम भी हो रहा है एक लड़का खड़ा है ।

छोटे-छोटे बड़े-बड़े पत्थर जैसे दिखाई दे रहे है और यहां खड्डा जैसा है।

हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव |

काफी है यहां पे ब्वॉयज भी है गर्ल्स भी है तीन-तीन एक-एक पर बैठे हुए है।

चारो तरफ से डिप्रेशन किया हुआ है सीमेंट सब ईटा उटा सब है ।

चारो तरफ से घेरा हुआ है ।

ये शादी के जैसे दिखाई दे रहा है ये बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है ।

बहुत अच्छी तस्वीर है फोटो खींचा-खींचा के लगाए हुए हैं दिवार पे पेंटिंग भी सटी है सामने गेट है।

है काफी लोग है अंदर एक लोग बाहर है ए.सी. लगा लाइट भी है।

ये मज़ीद हाेवत लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते होंगे पर य --

और ये पे लिफ्ट लगी हुई सीढियां आने-जाने के लिएऔर ये बहुत बड़ा --